इस रेस्टोरेंट में बहुत सारा टेबल चेयर लगे हुए हैं।

और वहां पर एक काउंटर भी बना हुआ है।

बहुत सारे श्रद्धालु नहा रहे हैं।

सारा टेयर चेयर टेबल अलग अलग कलर के हैं।

सैलून की दीवार का कलर ऑरेंज और व्हाइट है।

एक लड़का चेयर पे बैठा हुआ है।

टेबल पर एक मॉनिटर और टेलीफोन बूथ और पेपर्स पेन रखी हुई है।

नल बिकने वाले लगे हुए हैं।

चट्टानों के ऊपर डिजाइंस भी बने हुए हैं।

चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

मीरा में बहोत सारे वस्तुएं रखे हुए हैं।

इस कमरे के सीलिंग में लाइटे भी जल रही है।

नीचे कारपेट बची हुई है ग्रीन कलर की।

वाटर पार्क के चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है।

सभी अलमीरा में बर्तने रखे गए हैं।

खिड़कियों में आसमानी कलर का रॉड लगा हुआ है।

सभी आलमीरा में बड़े बड़े बॉक्सेस और डिब्बे रखे हुए हैं।

सभी डिब्बे अलग अलग प्रकार के हैं और रंग बिरंग के हैं।

कुछ सूखीं पत्तियां भी गिरी हुई है।

यहां पर बैठने का बेंच भी बना हुआ है।

बिल्डिंग्स के नीचे लाइटें भी लगी हुई है।

और सेकंड फ्लोर पर पावर हाउस जिम लिखा हुआ है।

इस तालाब में दो बत्तख भी तैर रहे हैं।

इसके नीचे में पर्पल कलर की कारपेट बिछी हुई है।

इस बड़े से हाल में बहुत सारा कुर्सी टेबल रखा हुआ--